बड़ी जगह नज़र आ रही है जहाँ पे काफी सारी घास दिख रही हैं वहीं काफी बड़े पेड़ नज़र आ रहे है और वहाँ जो कपड़े है सूखाए गये हुआ दिख रहे है।

वहाँ सीमेंट जो वो दिख रहा है गिट्टी नजर आ रही है वही एक बिल्डिंग सामने में दिखाई दे रही है वह क्रीम कलर की दिख रही है और कुछ हरी रंग की दिख रही है वहीं उसकी विन्डोस और डोर्स नजर आ रहे है कही कुछ कपड़े भी सुखायते हुए दिख रहे हैं।

नजर आ रही है जो क्रीम कलर की दिख रही हैं काफी सारे विंडोस नजर आ रहे हैं और वहाँ पर कुछ और बिल्डिंग नजर आ रही हैं जो ग्रे कलर की कुछ सफ़ेद रंग की कुछ बिल्डिंग दिख रही है।